जो एक बिल्डिंग की है इस बिल्डिंग के सामने काफी सारे पेड़ लगे दिख रहे हैं ये पेड़ सेम हाइट के हैं और कुछ लंबे --

यहाँ बीच में एक फब्बारा दिख रहा है जो अभी बंद है इसके अंदर एक पाइप डला हुआ है आस पास काफी लोग और पेड़ --